इस इमेज में एक बिल्डिंग की दृश्य को दिखाया गया है।

जिसके बाहर कुछ गाड़ी ख़ड़ी है।

जिसकी साइड में कुछ गड़िया खड़ी हुई है।

इस इमेज में कार पार्किंग के दृश्य को दिखाया गया है।

जिसमें बहुत ही गाड़ियों को रखा गया है और कुछ लोग खड़े हैं।